हैलो गाइस जेस की आप देख सकते है ये चर्च का घंटा घर का व्यूक है एण्ड आप देख सकते है यह पे बीच मे एक बहोत बड़ी सी घड़ी भी लागि हुई है एण्ड आपकी और मार्केट का व्यूक है एण्ड आप देख सकते है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे है बहुत सारे गाड़ियां है बहुत सारे पोस्टर्स भी दीवालों पे लगे हुए है।

हैलो गाइस जेसे की आप देख सकते है ये एक अस्पताल का व्यू है बीच मे आप देख सकते है की बहुत बड़ी घड़ी लागि हुई है एण्ड साइड मे आपको पेड़ पोद है भी दिखाई दे रहे बहुत सारे फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे होंगे।

हैलो गाइस जैसे की आप देख सकते है ये भी किसी कॉलेज का ही व्यू है बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है एण्ड बीच मे आप देख सकते है आपको व्हाइट कलर का एक गुम्बद टाइप का भी कुछ दिखाई देगा एण्ड यहां पे आप देख सकते है चारों साइड बहुत सारे पेड़-पौधे है।

आदमी भी है जो वह पर काम कर रहे है साइड मे आपको बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही होंगी एण्ड सामने आप देख सकते है दो बाल्टी राखी हुई है ।

गाइस जैसे की आप देख सकते है यहां एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है एण्ड आप यहां पे देख सकते है नीचे पाँच छे ठो पानी की टंकी भी नीचे रखी हुई नजर आ रही होगी एण्ड बिल्डिंग का कलर --